बहोत साारी चीजें आपको पता चलेगी स्कूल के बारे में।

हर प्रकार के खिलौने आपको यहां पर देखने को मिल --

इस फोटो में दिखाया गया है कि एक खुली जगह है।

इस फोटो में आप देख पा रहे हैं।

जैसा कि आप इस फोटो में देख पा रहे हैं कि यह एक कॉलोनी का पार्क है।

इस फोटो में दिखाया जा रहा है कि--

इस फोटो में आपको देखने को मिलेगा की एफ_एम_सी_जी आइटम्स पल्सेस ।

ये यहां से सामान होम डिलीवरी किया जाता है कांटेक्ट नंबर लिखे हुए हैं नेचर मार्ट के पास --

बेड है साइड मे सोफा है एक फॉरेनर यहां पर खड़ी है।